कुछ ऑफिस के केबिन बने हुए हैं जिनका रंग सफेद है और ऊपर से टी टीन डली हुई है जिनमें से रोशनी आ रही है फर्श पर सफेद कलर की पट्टीयां हैं और कुछ गाड़ियों का कबाड़ा भी डला हुआ है।

--ने एक स्नेक्स का फोटो लगाया है स्नेक का कलर गोल्डन है और उसकी जीत निकल रही है उसके दांत भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने कुछ पिलर खड़े हुए हैं जो आधे सीमेंट से भरे हुए हैं उनमें से सरिया दिखाई दे रहे हैं।

दीवार का रंग सफेद है और हरे बोर्ड पर हैप्पी दिवाली लिखा गया है हैप्पी के दिवाली के नीचे कंडल बनाए गए है कंडल कागजो के है कुछ कागजों के दिये भी बनाए गए है और कैंडल कुछ पीले कलर के है कुछ गुलाबी कुछ --

साइड कुछ पीली और सफेद और कुछ नीली है टेबले बिछी हुई हैं एक आदमी खड़ा हुआ है आगे एक गोल्डन कलर की लाइटे भी जल रही है कुछ लोग बैठे भी हुए है और उनका अंधेरा भी--